इस चित्र में बड़ी सारी सफेद एव हरे कलर की टूटी हुई मस्जिद दिखाई दे रही है।

एक दूकान लाल कलर की रेलाइन्स डिजिटल के नाम से दिख रही है जिसमे काफी सारे व्यक्ति अन्दर बेठे हुए नज़र आ रहे है।

इसी के पास में एक टूवेंट्स नाम की नील कलर की दूकान दिखाई दे रही हे जिसके द्वार कांच के है इसमें भी व्यक्ति दि--

बहार ऑरेंज कलर गुलाबी कलर सजाया हुआ है बहार एक काउंटर लगा है।

छोटे छोटे पोधे ज़मीन पर हरी भरी घास हरियाली व पोधे दिख रहे है।

ये चित्र एक बाइक शोरूम का दिखाई दे रहा है।

उसमे लटक टे हुए सफ़ेद कई सारे जुमर दिख रहे है ज़मीन पर लाल कालीन बिछा है।

ये मंदिर काफी सर्किटो से छदा सजा हुआ है फूल मलाओ से सजा हुआ है।

एक व्यक्ति सफ़ेद धोती कुरते में मछलियों को बेचते हुए नज़र आ रह है काफी सारे भेड मछलियों को खरीद टे हुए दिख रहे है।

गीच उतरे तालाब के किनारे का दिख रहा है जो तालाब के अंदर खूब सारा पानी भरने वाला हुआ है--

साइड में जाता हुआ पक्का रास्ता दिख रहा है रस्ते पे काफी सरे लोग खड़े है वोल्किंग करते हुए --

एक बड़ी सारी बिल्डिंग है एक सफ़ेद आत्मा--

झ-झंडू बा का लैप पीला गुलाबी लाल हरा--

ये चित्र एक ऊंट का दिखाई दे रहा है जिस--

ये चित्र एक बड़ी सारी मल्टी का नजर आ रहा है जो की सफेद सफेद कलर से हुई है।

जो की फूलो से सजा है नीचे कालीन लाल कलर का दिख रहा है।

निचे पर्पल कलर का बेनर यहाँ पे दिखाइ दे रहा है सामने खड़ी हुई दो मुपेट एक्टिवा दिखाई दे रही है ।

ये चित्र एक पार्क एवं गार्डन का दिखाई दे रहा है जहा पर बड़े सारे हरे एवं लाल पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे है।

पास पास बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर हमे दिखाई दे रही है ऊपर नील कलर का आसमान --

एक आदमी खाना पकाता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है हाँ टेबल पर बीता एक व्यक्ति ने --

और काली कलर की बिजली के बड़े बड़े तार दिखाई दे रहे है पीछे एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है।

पिलर के ऊपर बैक हाउस लिखा हुआ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ।

पूल के पीछे एक स्टेज के ऊपर यहाँ के गेस्ट नज़र आ रहे है।

जमीन पर सफेद टाइल्स है इस बेड के ऊपर रेड बेड शीट है ।

भागते हुए नजर आ रहे है जिसमे तीन ने पीले और सफेद कपड़े पहने है।

नीचे काफी सारे विले दिखाई दे रही है।

ये चित्र एक पुरानी ईमारत का दिखाई दे रहा है।

उनके काफी पुनाने है पथर की एक दीवार है उपर सफेद लटकता हुआ पंखा हमे दिखाई दे रहा है।

ये बोहोत बड़ी सारी जगा है ये जहा पे बोहोत सारे पिलर है।

अम्म गुब्बारों से सजा हुआ दिख रहा है।

एक लाल कलर की टाइल्स से जाता हुआ रास्ता है।

ये चित्र एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हिया जिसमे एक व्यक्ति हाथ में पाइप लिए हुए कार में --

सी_एन_जी गेस भर रहा है ये गेस का बेनर लाल कलर का है उपर सार नीला लगा हुआ एक बेनर है जिसपर लाइटे लगी हुई है।

जो ऊपर की और आ रहे है ऊपर चदते हुए काफी सारी बतखे हमे दिखाई दे रही है।

जो कि काच की दिखाई दे रही है बहर काफी सारी पार्किंग है पार्किंग फोर्विलेर में वो काफी सारी फोर्विलेर यहाँ पे इक्कठा है बहोत सारे हरे पेड़ पोधे है।

ये चित्र एक पार्किंग के बाहर का दिखाई दे रहा है जिसके जमीन आदि कच्ची आदि जमीन पर घास--

ज़मीन के ऊपर हरी घास लगी है बिच में एक स्टैंड दिखाई दे रहा है आस पास स्ट्रीट लाइट एवं बाउनड्री दिखाई --

सफ़ेद कलर की कार दिखाई दे रही है इसमें साडी बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

बहार एक बिजली का बड़ा सारा खम्बा दिख रहा है।

ये चित्र एक बिल्डिंग के कंस्ट्रकशन का दिखाई दे रहा है जहा पर ऊपर छत बन रही है बोहोत सारे मिस्त्री --

इसके पास जो लाल कलर की काउट है और पीछे बड़ी सारी फ्रीज़ है जिसमे --

बॉटल पानी दिखाई दे रहा है पीछे एक औरत काले कलर के कपडो मे बैठी दिख रही --

हम्म मारुती सुजुकी का शोरूम दिखाई दे रहा है साइड में बड़ा सारा बिजली का खम्बा --

ये चित्र एक स्कूल का दिखाई दे रहा है जोकि सफेद कलर की बिल्डिंग है इसके दरवाजे एवं खिड़कियाँ--

हरे पोधे वहा पर दिखाई दे रहे है बिच में एक स्टेच्यु बना है ज़मीन पे हरी कलर की घास --

बिच में डिवाइडर पे बड़े बड़े सरे हरे पैर जमीन पर जमीन कच्ची है जमीन पर हरे कलर की घास दिख रही है।

ये चित्र एक ऐसे साइज़ की दुकान का दिख रहा है जहां पे काफी सारे मोबाईल --

और हेड फोन हमे बड़ी सारी अलमारियो मे दिखाई दे रहे है जो पुट्ठे मे बैंड है ।